मुझे दोनों कटोरी में सब्जी देखाई दे रही है सलाड दिखाई दे रहे है और ये टेबल मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ मुझे दो चमच दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहे है और एक छोटा सा घर बना हुआ है खेत के बीच वो दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ --

इस इमेज में मुझे राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे फुलो से सजी फूलों की माला दिखाई दे रही है।